यहाँ बहुत सारे टेबल और कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ बहुत सारी लाइटें भी लगाई गई है और यह ऑफिस बहुत ही बड़ा है।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

इस में पुल है इस पुल में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं इस पुल के चारो ओर बहुत सारे पेड़-पोधे लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं इस पुल के बगल में एक बहुत बड़ा घर बना हुआ है ।